इस बस स्टैन्ड लोगो के आने जाने के पानी की टंकी रखी हुई है और ब्लेक भी रखी हुई है खाफी ज्यादा पानी --

झूलने के लिए भी काफी सुन्दर है |पेड़ भी अगल बगल लगे --

मकान बना हुआ है पेड़ लगे हुए हैं। लोग घूम भी रह गाड़ी भी आ रही है। सड़क भी बड़ी है। पेड़ है हरी लगी हुए --